हमारे यहा सभी प्रकार की कॉपी पेन और पेन्सिल रबर कंपास आदि मिलता है।

अ बच्चो के खेलने के खिलौना पुस्तके सारी चीजे बची हुई हैं।

यहा है और आस पास बो --

और जिसके पिछे की तरफ काच का दरवाजा लगा हुआ है ये आदमियोंका का सलून है।

और कुछ का पैसे निकाल रहा हैं और कुछ आदमी बहार--

चित्र एक दुकान का हैं जहाँ बहोत सारी पुस्तके रखी हुई हैं उपर की तरफ गुब्बारे फुला कर रखे हुए हैं आसपास में बहोत सारी लिखने के लिये सामान भी उपलब्ध हैं।

और एक आदमी भी खड़ा हुआ हैं।